एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ साइड में बॉडर में बहुत सारे पिलर लगे वायर लगी तार फिनिशिंग है बीच में एक बड़ा सा पिलर है।

येलो कलर की नीचे साइड में एक बड़ा सा बोर्ड लाग है ब्लू कलर में और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

स्विमिंग पूल के बीच में एक मशरुम शेप में एक पिलर है जिसमे से पानी गिर रहा है वहाँ पे पास में एक येलो कलर की बड़ी सी स्लाइड भी है।

एक बड़े से हॉल में बहुत सारे टेबल और चेयर रखी हुई है एक टेबल पे एक लैपटॉप रखा है जिसपे कुछ प्रोग्राम चल रहा है और उसपे प्लेट लगी हुई है।

आखरी कुछ बॉर्डर बनी हुई है ग्रीन और रेड कलर की और वहाँ कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी है।

कुछ लोगो ने हाथ में अगरबत्ती ली है और कुछ लोग हाथ जोड़ के पूजा कर रहे है।

रेलिंग के पास कुछ सामाने पड़ा हुआ है रेलिंग के बाहर दो बॉल पड़ी है एक फुटबॉल पड़ी हुई है एक ग्रीन बॉल है और एक ब्लैक एंड वाइट बॉल है।

सेलिंग के ऊपर बीच में एक झूमर लगा है बड़ा सा--

उधर पीछे कुछ लोग खड़े हुए है और उन लोग को देख रहे है।